इस तस्वीर में मुझे एक स्टोर दिखाई दे रहा है।

काला प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है । बॉटल्स भी दिखाई दे रहा है।

हरे हरे पौधे भी दिखाई दे रहा है।

दीवार में पीछे एक अब्दुल कलाम का फोटो भी दिखाई दे रहा हैं।

ट्यूबलाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

बकेट भी दिखाई दे रहा है साइकल भी दिखाई दे रहा--

ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

कॉफी कप भी दिखाई दे रहा है कुदाल भी दिखाई दे रहा है।

बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

दो हथोड़ा भी दिखाई दे रहा--

ट्रेन की पटरी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे चर्च दिखाई दे रहा है।

बंबूज भी दिखाई दे रहा है।

दीवार में फोर व्हीलरस पार्किंग भी लिखा हुआ है।

घर भी दिखाई दे रहा है लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी के हाथ में ब्रेसलेट भी दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

दरवाजा भी दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारा पोस्टर भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बिल्डिंग का बालकनी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे नीला दो कॉरपेट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रहा है भी दिखाई दे रहा है।

एक भी दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है दो प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे रोल्स भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे हैंगिंग फ्लावर पॉट्स भी दिखाई दे रहा है।

बहौत सारे लाल दुपट्टे भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पोडियम दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

गणेश भी दिखाई दे रहा है। कोना में एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

सामने में स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

उंगली भी दिखाई दे रहा है।